मस टेप -उप मार रहा है सेलों टेप मार रहा है देख सकते है आप पेंट मार रहा है मस्त पेपर पे लगा के।

देख सकते है बहुत बड़ा मस्जिद है यहाँ बहुत सारा लोग नमाज़ पड़ रहे है और अधिक मेट - उट लगा है और अधिक चीज है देख सकते है आप लोग रेड कलर का मेट बिछा है और एदम मस्त --